बिल्डिंग ओ जो घर है न बहोत अच्छा सा दिखाई दे रहा है और इसमें और एक बल्ब भी जल रहा है।

के उपर कुछ चेयर का कपड़ा लगा के बहोत अच्छा से सजा हुआ है।

और इसके पास एक बड़ा सा स्टेडियम का जैसा बना के रखा है और इसका जो स्किन है ना बहोत अच्छा से दिखाई दे रहा है।

इस रैक के ऊपर बहुत सारा फैन रेफ्रिजरेटर आदि ऐसा कुछ बोथ सामान दिखाएं--

ग्राउंड में बहुत सारा आदमी को देख रहा है बहुत सारा गार्ड को भी देख रहा है।

गढ़वाल के भीतर एक नारियल का पेड़ दिख रहा--

इसमें एक बाइक है और इसमें एक ठेले हैं।

एक साइट लोहा के सकल से बना हुआ है और एक सिकल का रंग येलो कलर भी है।

में बहुत सारा बहुत सारा लाइटिंग लगा रखा हुआ है छूटा बड़ा बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा--

इसमें और एक छोटा छोटा घर भी दिखाई दे रहा है बैठने के लिए बहुत अच्छा सा जगह है आराम दूराम करने के लिए बहुत सारा अच्छा दुकान है।

इस चित्र के अंदर एक छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है नदी जैसा दिखाई दे रहा है।

इसका बाहर एक बाइक भी खड़ा है।

इस पिक्चर में एक दुकान दिख रहा है।

राउंड वाला केक के ऊपर एक क्रीम वाला कुछ सामान दिखाई दे रहा है ओ दु तीन क्रीम और एक फ्लावर का चीज खाने के लिए भी है यही।

स्कूल के पास बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

स्टेडियम का जो बाहर में है बहुत सारा ऑडियंस भी है ऑडियंस भी इस प्रोग्राम को देख रहा है बहुत सारा स्पीकर है माइक सब कुछ भी है।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

इसमें बहुत सारा आदमी लोग यहां पे बात करने के लिए आ रहा है और बात भी कर रहा है।

इस चित्रों में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर पकौड़ा का दुकान दिखाई दे रहा है इसमें दो एक आलू चप का प्लेट रखा है और इस प्लेट के अंदर बहोत सारा आलू चप है।

इसके बाद बहुत सारा वन वन टुकड़ा कट कट करके पीस पीस करके रखा हुआ है और एक बोरा है बरा सा समोसा है रखा हुआ है।

इस चित्रों में दिखाई दे रहा है एक पुष्कोरनी है और इस पुष्कोरनी के चारों पास में बहुत बड़ा बड़ा जंगल है बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है और दिखने में बहुत अच्छा है।

और के बीच में मतलब यहां पर एक बांध भी है बांध बहुत अच्छा है मजबूत है।

इस चित्रों में दिखाई दे रहा है एक ठेले का दुकान।

इसमें एक रैक रहता है बल्टी भी है और बहुत सारा केला भी है।